ये डोर स्काई कलर का है और बहुत सारा सुंदर भी --

चार फ्लोर शायद बिल्डिंग दिखाई देता है फर्स्ट बिल्डिंग का कलर है पर्पल कलर और नीचे का ऑरेंज कलर और साइड का थोड़ा सा क्रीम कलर है।

पंख लगा हुआ है एक टेबल है वो जो टेबल का रां ब्लैक है उसके दो लोग हैं।

ये ए_के_बी_डी वर्ल्ड स्कूल है या जैसे लग रहा है कि वो कर्राटा स्कूल है।

और यह व्हाइट कलर का अ कपड़ा पहने हुए हैं और जो नीचे सोए हैं वो ब्लैक कलर का और क्रीम कलर का--

हां एक मेकअप होता है यहां पर एक जो सूखा--

लगा हुआ है जहाँ पर बहोत सारे बेलूनस है इसका डेकोरेट किया गया है जैसे बेलून का कलर वाइट --

प्लाजा प्लाजा ये बहोत सुंदर दिख रहा है।

और अह बहोत सुंदर सी ये रूम को डेकोरेट किया गया है बहोत--

फिर से यहां पर र--

सब कुछ ऍडमिशन कर सकती हूं। इस पोस्टर में ग्रीन कलर का लगा हुआ है।

ये एक दुकान है जिसका नाम है अह गौरी किचन जो वेज नॉन वेज अह यहां पर मिलता है।